और हॉस्पिटल के आस पास बहोत सारे पेड़ है ।

साबुन इत्यादि प्रकार के सभी वस्तुये अवलेवल है।

यह सूरज निकलने का वक्त है और पूरा अँधेरा छाया हुआ है।

जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ घर का काम चालू है।

ठीक से लगाई हुई है।

और यहां एक सिक्योरिटी गार्ड भी है।